कोई मंदिर दिखाई दे रहा है जो की रेड कलर का है और उसके ऊपर येल्लो कलर की गोल्डन कलर की घूमट लगी हुई है और बाहर एक गेट दिखाई दे रहा है जिसके बाहर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और--